और लाइट ब्लू कलर का वाटर हमें दिख रहा है।

और एक आदमी ब्लैक कलर के शर्ट पहने बैठा हुआ दिख रहा है।

उने घड़ी पहना हुआ है और ब्लैक कलर की पेंट पहना हुआ है।

आगे ग्रास का ग्राउंड हमें दिख रहा है।

एक क्रीम कलर की बिल्डिंग भी हमें दिख रही है।

यह फोटो में हमें एक रेड कलर का बड़ा सा सोफा दिख रहा है।

ये फोटो हमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की दिख रही है।

ये फोटो हमें एक मॉल के बाहर की फोटो दिख रही है।

जिसके ऊपर एक भगवान की मूर्ति बनी हुई है।

और कुछ लोग आस पास चलते हुए दिख रहे हैं।